पेड़ पोदहे भी दिखाई देवे है पीछे न कई बालक देखे है कोए कुछ करे ह कोई कुछ करे है अर नीर सारा पा --

बड़े बड़े पेड़ पौधे से भी दिखाई देवे छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई देवे अह दूर दूर ते बहुत अच्छे बादल भी दिखाई देवे बहुत अच्छे--

यह एक पिक्चर दिखाई देवे बहोत अच्छी सी इसमें ने टेबल के ऊपर बहोत सारा समान रख्या है।

दूर दूर तक मकान दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे दीवार भी--

सड़क भी दिखाई दे रही बहुत अच्छे से--

एक का लाल रंग है टिन्ना का काणा रंग है एक का सफेद कलर है।